छोटे-छोटे पेड़-पौधे भी लगाए गए हैं बड़े पेड़-पौधे भी हैं घर है ग्राउंड है खुला आसमा है और क्या कहे हम--

ये लोग मूर्तियां बनाने का काम करते हैं ये लोग बहोत कलाकार होते हैं जो एक मिट्टी के ढांचे को इतना खूबसूरत बना देते हैं की लोग इनके--

टी है। रेत है। कुछ च गार्डनेरी एरिया है यार --

ग्राउंड है आस-पास लोग हैं फुटबोल खेली जा रही हैं।

और यहां पे गायों को खिलाया-पिलाया जाता है रखा जाता है।